एक एक पैसेंजर हर बस पे चढ़े जारी है जहाँ की होगी।

यहाँ पे देखिए ढेर सारे फूलों से सजावट है और यहाँ पे कुर्सी रखा हुआ है जो कि आज लगता है किसी का शादी का रिसेप्शन है।

और आसमान में जो बादल छाए हुए हैं बहोत ही उमड़ते हुए गरजते हुए तो लग तो रहा है इस तरह और बगल में --